इस दृश्य में हम बड़ा सा रास्ता देख रहा है रास्ते के --

पर्दे लाल और सफेद रंग के हैं।

उसके सामने मेज पर बहोत सारे शीशियां और डब्बे रखे गए हैं।

मुर्तियां बनाई गईं है मुर्तियों के अगल-बगल --

कुछ वृक्ष की टहनियाँ लटकती हुई नज़र आ रहीं हैं।

कुछ डब्बे मेज पर रखे गए हैं।

बीच में एक औरत --

इस दृश्य में एक लंबा सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के दोनों तरफ खम्भे हैं खम्भे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इनके आगे एक बड़ा सा दरवाजा है। दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है।

इसके सामने बारजा भी बनाया गया है। बारजे पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस दृश्य में हम देख रहे हैं एक नाम नाई का दुकान इसमें एक आदमी --

एक बिजली का खंभा भी --

इस दृश्य में हम देख रहे हैं कुछ लोग हाथ में झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है। कमरे में जगह-जगह खंभे नजर आ रहे हैं।

नाव के ऊपर बहुत सारे लोग सवार दिखाई दे रहे हैं।

इसमें पर्दा भी लगाया गया है। कुछ लोग सामने दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ दो मंजिलों का एक लंबा सफ़ेद रंग का मकान दिखाई दे रहा है।

स्पीकर काले रंग के हैं। इनके ऊपर बिजली का तार भी लगा हुआ है बगल में।

पीछे पहाड़ और बहुत सारे बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।